चित्र में मुझे ऊपर फैन लगे हुएं दिखाई दे रहें हैं चित्र में मुझे कई सारे लोग बैठे देख रहें हैं।

मैं एक सॉप देख पा रही हूं सॉप में मुझे बजाज लिखा दिख रहा है।

चित्र में मुझे बजरंगबली का कलर ऑरेंज दिख रहा है।

चित्र में मुझे बजरंगबली के मंदिर पे टाइल्स दिख रही है।

चित्र में मुझे हवेली का कलर गिरु दिख रहा हैं।

कई सारे पेड़ के बीच में बना हुआ एक घर दिख रहा है।

चित्र में मुझे कई सारी कुर्सियां रखी हुई दिख रही है।

शॉप के बाहर कुछ लड़के बैठे हुए टेबल पर दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे एक लोग स्वेटर और टोपा लगाए हुए दिख रहा है।

कई सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में मुझे रेलिंग लगी हुई दिखाई दे रही है।

चित्र में मुझे अलग अलग दुकान बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में मुझे एक शॉप दिखाई दे रही है।

पिंक कलर दिखाई दे रहा है चित्र में मुझे ऊपर मुझे पोस्टर लगा हुआ मध्य रेल का दिख रहा--

चित्र में मुझे टेबूल के ऊपर गोंद रखा हुआ दिखाई दे रहा है और कई लोग बैठे दी--